और इसने फ्रंट में ही बाइक खड़ी एक बाइक खड़ी हुई है और एक रिक्शा खड़ी हुई है।

और शटर ऊपर हो रखा है।

यहां एक मेडिकल है मेडिकल अमित कुमार के नाम से है और मेडिकल के सामने रोड है रोड के उस साइड में स्कूटीयां लगी हुई हैं।

अ प पेड़ भी खड़े हुए हैं यहां एक आदियोगस्थली योग शाला केंद्र का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है फ्लोर के बीच में एक ड्रम रखा हुआ है।

साइड में बाथरूम बनी हुई है।

साइड में एक कमरा है कमरे में लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है उसपे पर्दे लगे हुए हैं।

और पीछे इसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसके हाथ दिख रहे हैं बस।

पे वाइट और रेड कलर के कपड़ा लगा हुआ है।

और नेहेर के ऊपर फूल भी हैं।

ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर बड़े अक्षरों में विजय लिखा हुआ है और उसके गेट लोहे का बना हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल का रिसेप्शन है रिसेप्शन के बाहर कुछ लोहे की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

लेने हुए है लकड़ी के।

यह एक डॉक्टर की दुकान है। डॉक्टर की दुकान में एक मेज लगी हुई है।

और साइड में एक तिरंगा झंडा लहरा हुआ है और ऊपर के पीछे --

और परचून की दुकान में एक आदमी बैठा हुआ है।

इसमें एक फैन भी लगा हुआ है की दुकान में कुछ समान कुरकुरे वगैरा वगैरा टंगे हुए हैं।

यह एक कार का शो रूम है। शो रूम में एक फायर सिलेंडर भी लगा हुआ है।

और स्लैब में दीवाल की जगह शीशे लगे हुए हैं।

टेबल पे कुछ दवाइयां रखी हुई है।

और इसमें एक लकड़ी की टेबल पड़ी हुई है लंबी।

और यहां बहोत से आदमी और लेडीज बैठी हुई हैं।

और यहां पर कुर्सी भी लगी हुई हैं टेबिल भी लगे हुए हैं।

और फील्ड में बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं।

की साइड एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और ये बहोत अच्छा लग रहा है और इसका लाइट ऑफ --

यह एक शादी का मंडप है।

यहां कुर्सियां वगैरा भी रखी हैं साइड में।

लाल पर्दा लगा हुआ है।

यहां बहोत अच्छा पुल बनाया जा रहा है इस पुल की बाउंड्री पर एक तरफ एक नीले कलर का ड्रम रखा हुआ है।

कुछ कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं।

यह एक फास्ट फूड का ठेला है जिसकी जिसके अंदर एक तवे पे टिक्की रखी हुई हैं।

पिजा पैक करने के हैं।

यहां नीचे बहोत हरी हरी घास खड़ी हुई है।

पास में ही एक टेबल रखा है जिसके ऊपर कुछ दवाइयां रखी हुई हैं।

और एक आइशर ट्रैक्टर के सामने--

गैलरी बनी हुई है और बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है।

और मेडिकल के बाहर दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है।

यह एक योगा रूम है रूम की दीवारें पीले कलर की है और खिड़की--

यहां योगा कर रहे हैं एक टीचर योगा करा रही है इनको।

ग्लास में विंडो लगी हुई हैं एक शीशे की।